और वहां पे बहुत सारे जंगल झाड़ भी देखने को मिल रहे है और उसके पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ एवं नारियल के पेड़ भी देखने को मिल रहे हैं।

उस पेड़ एवं महिला एवं बहुत अनेक अनेक प्रकार के सामान भी दर्शाये गये है।

और वहां पे कुछ ए_सी एवं पंखे भी देखने को मिल रही है।

और वहां पर एक गाड़ी खड़ी है जो की ट्रैक्टर है।

और नीचे में बहोत सारे छोटे-छोटे घास-भूसे भी नजर आ रे हें।

और वहां पे एक बाइक खड़ी है जोकि काली रंग की है औ वहां पे दो आदमी खड़े हैं एक उजले और एक नीले रंग के कपड़े पहने हुए है।